और इसके बाजू मे के ए_टी_एम भी है इस बँक के सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है और जैसा की आप देख सकते है इसके सामने एक बहुत बड़ा पेड लगा हुआ है।